सामने यहां पर पानी पूड़ी रखी है और प्लेट्स भी नजर आ रही है।

एक पार्किंग दिखाई दे रही है जहां पर कार खड़े नजर आ रहे है।